बच्चे अपना हाथ ऊपर किये हुए हैं और एक महिला नीचे फर्श पर बैठी हुई है।

ये किसी शापिंग मॉल का फोटो है। यहाँ पे एक पार्लर की --

वर्तमान में तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं एक व्हाइट कलर की है और एक ग्रे कलर की है।

यहां पर एक ए_सी लगा हुआ है और बाहर अशोक का पेड़ भी इसमें लगा हुआ है ।